यह एक उत्कर्मिक मध्य विद्यालय स्कूल है स्कूल के चारो तरफ से बाउंडरी किया हुआ है इसमें बहुत सारा घास फूस दे दिया है देखने में बहुत सुंदर लग रहा है ये दो ताला है।

पाँव में कांटा चुभे हुए हैं वो डॉक्टर को बुलाया गया है बगल में बैग रखा है।

ये एक आदमी हैं जो नाव पर खड़े हैं लाल कलर का सूट पहने हैं लाल कलर का टोपी भी पहने हैं जींस भी पहने हैं।

सब मसाला लिए हुए है ईटा भी है गिट्टी भी बालू भी समिंट बहुत सारे चीजे है देखने में अच्छा लग रहा है मुझे बहुत पसंद आ रहा है ।

यह इंडियन ओवरसीज बैंक है यह बहुत अच्छा है।

इलेक्ट्रॉनिक तार है ट्रांसफार्मर रहा है दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है।

इसको जो खरीद के ले जाएगा शादी ब्याह में या गाड़ी में लटका --